ये चित्र मा जी हम देख ही सक्दों कि हम ते यखम एक काला रंग कु गेट खुलयूं दिखेण लग्युं वै का एंच हम ते नीला रंग कु बड़ु बोर्ड दिखेणु जै पर लिख्युं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ।